पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पर कुछ लिखा हुआ है योग योग केंद्र--

उस पर कुछ लिखा हुआ है नीचे घर है घर का रंग उजला है।

एक गेट भी है गेट का रंग भी उजला काला है।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

बहुत सारे आदमी हैं ऊपर झंडा लगा हुआ है।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा हुआ है।

अगल-बगल बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।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

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

आकाश का रंग उजला है नीचे बहुत सारे--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है घर का रंग ब्लू है अगल-बगल बहुत सारे पेज पौधे दिखाई दे रहे हैं।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

एक तस्वीर लगा हुआ है उसके अंदर बहुत सारे--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

दुकान दिखाई दे रहा है एक हॉल दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का और उजला कलर का बलून लगा हुआ है।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

नीचे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं अगल बगल एक घर दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है.

तस्वीर में बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं अगल बगल बहुत सारे--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगर-बगर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

उसके पूरा फूल से सजाया हुआ है.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

अंदर एक गेट लगा हुआ है गेट का रंग काला है.

एक तस्वीर लगा हुआ है तस्वीर के अंदर बहुत सारे गाड़ी हैं.

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे है ऊपर आकाश है आकाश के रंग उजला है.

नीचे बहुत सारे घर दिखाई दे रहा है ऊपर पहाड़ दिखाई दे रहा है.

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर का नाम--

सिटी दिखाई दे रहा है नीचे गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी का रंग ब्लू है.

एक तस्वीर लगा हुआ है तस्वीर में बहुत सारे पेज पौधे लगे हुए हैं अगल-बगल घर है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं अगल बगल बहुत सारे--

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है तस्वीर के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है ।

घर दिखाई दे रहा है एक दुकान दिखाई दे रहा है दुकान में चाय बना रहे हैं ।

एक तस्वीर दिखाई दे रही है तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं ।

एक तस्वीर लगा हुआ है तस्वीर के अंदर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इसके अंदर बहुत सारे सामान रखा हुआ है ऊपर--

नीचे आगे पीछे सब लाइट बर रहा है।

आदमी बहुत सारे हैं अगल-बगल पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक तस्वीर दिखाई दे रहा है अगल-बगल बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं ।

एक तस्वीर में अगल-बगल बहुत सारे आदमी हैं।

अगल-बगल बहुत सारे गाय लगा हुआ है एक पेट्रोल पंप है ।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

नीचे बहुत सारे गाढ़िया दिखाई दे रही है।

से आकाश का रंग उजला है अगल बगल बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है गमला दिखाई दे रहा है बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं ऊपर गाड़ी दिखाई दे रहा है आकाश का रंग उजला है।